इस फोटो में मुझे गेट दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे आइसक्रीम का ठेला दिखाई दे रहा है।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

इस फोटो में मुझे एक बड़ा गोदाम दिखाई दे रहा हैं।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

इस फोटो में मुझे बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे एक कुत्ता दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे कटीली तार दिखाई दे रही है।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

इस फोटो मे मुझे एक बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।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

इस फोटो मे मुझे एक खिड़की दिखाई--

इस फोटो में मुझे पंखा दिखाई दे रहा हैं।

इस फोटो में मुझे हॉल दिखाई दे रहा हैं।

इस फोटो में मुझे बड़े बड़े पाइप दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे गाय दिखाई दे रही है।